ए.टी.एम. है ए.टी.एम. में जहां डस्टबिन है डस्टबिन में करें --

और पीछे मे यह शाखा पर्सनल सी.सी.टी.वी कैमरे में निगरानी में है बोर्ड पे ऐसा लिखा हुआ।

और वो आदमी अपने-आप को आईना में देख रहा है आर यहां पे क्रीम रखा हुआ है।

यहां पे एक घर है जिसके ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है कैप्टन सिक्स हंड्रेड ई.क्यू.आर. दोनों तरफ से और नीचे में स्टील का लगा हुआ है।

यहां पे दो कुर्सियां है लाल रंग के और यहां पे बच्चों के बैग्स और किताब रखे हुए हैं ।

यहां पे पानी मारने वाला रखा हुआ है कलर करने वाला रखा हुआ है क्रीम है।